ये सेकेंड फ्लोर तक है इसके वॉल में बहुत सारी विंडो और डोर है।

इस फोटो में एक टेबल से टेबल पे बहुत सारे नैपकिन और ग्लासेस रखी हुई है जिसके साइड में बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक जिम है।

इस जिम में बहोत सारे जिम के इक्विपमेंट रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक लड़का है जो जिम कर रहा है जिसने ग्रे कलर की टी शर्ट व ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है।

उसके साइड में घर के ऊपर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है।

इसके दूसरे तरफ एक वाइट कलर का कार है और एक लड़की खड़ी हुई है।

दो पेड़ और एक ब्लैक कलर की कार पार्क की गई है।

और बहोत सारे रेक है जिनमें बहोत सारे कपड़ों को प्लास्टिक पे या बहोत सारे कपड़े ऐसे रखे हुए हैं।

इसके दूसरे साइड एक चापानल है।

इसके पिलर पे ग्रास और लाइट से डेकोरेट किया गया है।

इस रूम का कलर व्हाइट है।

एक पेशेंट बेड है।

इस फोटो में एक रोड है इस रोड के चारों तरफ बहुत सारे फ्लावर्स और छोटे छोटे प्लांट्स और पेड़ लगे हुए हैं।

इसके बीच में दो खटिया लगी हुई है और टेबल्स और चेयर रखी हुई।

इन फोटो में बहुत सारी गाय है।